सामने लक्स लक्ष्मी स्टोर हैं लक्ष्मी स्टोर अ मे शटर लगा हुआ हैं लाख हैं उसके बगल मे।

पेड़-पौधे है हरे-भरे है बादल नीला सफ़ेद --